और जड़ियाँ है नीले कलर की जड़ियाँ है खम्भा सीमेंट का है सफ़ेद कलर पीला कलर है लाल कलर है।

बोहत बड़ा पहाड़ है जहां से वॉटर गिर रहा है सफेद कलर दिखाई दे रहा है बहुत सारे पब्लिक है।

कलर का कुरता पहन रखा है खम्भे है वायर सी जा रही है करंट की।